स्टेट बैंक है | इससे पैसा ऐ.टी.एम. से निकाला जाता है यूज़ किया जाता है ।

सब चीज इसमें होता है।

अच्छा है बुलबुल के जैसा लगती है।

माइक से बात भी हो रहा है एक बात कर रहा है चार लोग सुन रहे हैं।

ये तो पहाड़ के किनारे-किनारे खेत जैसा लग रहा है क्यारी बना हुआ है लगता है की पानी का सिंचाई भी हुआ है।

ये तो बड़ा वाला दुकान में जैसे नहीं सब रखता है --

ये सब मूर्ति सब सजाया गया है और सब बैठकर के देखो कैसे ढोल ताशा सब बजा रहा है।

ये तो लग रहा है क्रिस्टन के जैसा अ देखो कितनी अच्छी सी सज कर के खड़ी है फोटो खिचाने के लिए गेट पर है।

सब जगह से जाती है कपड़ा खरीदने --

गाछ-वृक्ष जंगल कितना अच्छा लग रहा है ऊँचा-निचा पहाड़ भी है।

ये स्टेट बैंक लग रहा।

आ धूप आर के छाव भी हेय आ खिड़की के तरफ देखो कितना सब निकला हुआ है बैंक बैंक होता है शटर भी लगा हुआ है।

हाँ और उधर भी पहाड़ से लगता है की कीचड़ उचड़ की तरह अच्छा --

सभी बच्चे इसमें जाकर के पढ़ते-लिखते हैं साइड से भी गेट है।

क्या क्या झलक रहा है | ईटा है बालू है क्या क्या सब है बगल से पेड़ भी लटक रहा है।

और खेत में लगता है की गेहूं है की धान है की क्या है चारों तरफ से फूल वगैराह भी है।

मिठाई सब पंखा सब लगा हुआ है | बॉल बत्ती लगा हुआ है | मिठाई तरह तरह का है देखो टेबल कुर्सी भी लगा हुआ है।

ये बच्चा सब तो कीचड़ में खेल रहा है किसी के पैर तक घुटना तक किसी --

और फूलझड़ी लग रहा है की ऊपर में जल रहा है कितना अच्छा लग रहा है देखने में |